इस फोटो में बहुत सारा घर दिखाई दे रहा है।

रास्ता का किनारे में एक साइन बोर्ड लगाया हुआ है।

यह फोटो में एक भोजन का प्लेट दिखाई दे रहा है।

चाय टपरी के आगे में एक डस्टबिन भी नजर आ रहा है।

दीवार का बगल में बहुत सारा कार्टून रखा हुआ है।

बिल्डिंग का बगल से एक झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहा है।

हाथ से बनाया हुआ सीढ़ी दिखाई दे रहा है।

रस्ता का कोरन कॉर्नर में पत्थर भी दिखाई दे रहा है।

बुलेट का बगल में एक हेलमेट दिखाई दे रहा है।

एक आदमी हाथ में कॉपी पकड़े हुए दिखाई दे रहा है।

घर का ऊपर में टेबल और चेयर रखा हुआ है।

यह पिक्चर में एक बड़ा सा होल दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में लोहे से बनाये हुए सीढ़ी दिखाई दे रहा है।

और चार ठो गारी पार्किंग करते हुए दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में घर दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में घर की ओर जाते रस्ता दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा तामून का पेड़ दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग का आगे में बहोत सारा गुब्बारा टंगाया हुआ है।

टीना से बनाया हुआ बक्सा बहोत सारा दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में पानी दिखाई दे रहा है।